इस तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है कि यह एक छोटा सा ट्रेन का डिब्बा है।

इस तस्वीर को शाम के वक्त मैदान के अंदर से खींची गयी है जहाँ यह दिखाई दे रहा है कि मैदान में कोई भी नहीं है।

इस तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है। यह एक पार्क की तस्वीर है और पार्क के अंदर कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं |

पार्क के अंदर कई सारे झूले भी लगाए गए हैं जिसमें एक झूला टूट गया है |